सड़क है और सड़क पे टेम्पो जा रहा है और उधर एक बाइक खड़ी है जिसपे एक आदमी खड़ा है और एक दुकान है दुकान लग रहा है जैसे प्लास्टिक का दुकान है और उसके सामने एक कार खड़ी है।

और ये शायद अपना ही जैसा नहीं बल्कि पड़े-पौधा जैसा दिखाई दे रहा है पेड़-पौधा बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रकृति का देन है।

केरा भी है झाड़ू है राधा है और इसमें एक और साइकिल भी है।

और बगल में एक पोल है और यहाँ पे तीन-चार पेड़ है बहुत ही अच्छा लग रहा है आम का लग रहा है शायद और --

इस पिक्चर में आपको दिख रहा है जैसे स्टेशन की ओर है जो नीचे सीढ़ी सरसराती उड़ती जा रही है।

और यहाँ एक ट्रेन है जो खड़ी है बहुत मस्ती से और बगल में बहुत आदमी वेट कर रहें हैं अपने प्लेटफॉर्म पर अपने ट्रेन को अपने मंजिल की और से और बहुत ही दिखने में अच्छा नजारा लग रहा है।